सबसे सस्ता में सरकारी हॉस्पिटल वे में इलाज होवये दुए रुपया में डॉक्टर साहब इलाज़ --

एय से नौआ बाल काटो ह फेशियल करो ह एय मसाज करू है एम.जे. स्टाइल स्टाइल से बाल करवे को सब स्टाइल से काट तो ।

इम्म आदमी आवोय पढलेय बाहर बाहर राज्य से विदेशो से लड़का लोग आवोय पढ़े लगीं यहाँ पढ़ाईं बहुत बढ़ियां होयं।

आ बे न आमो के चटनी हैय आने व खाएले --